ब्लैक अक्षरों से कुछ लिखा हुआ है। यहाँ पे एक गेट लगा है। गेट का कलर कत्था कलर है। व्हाइट कलर का पोस्टर लगा हुआ है जिसमे कुछ भी नही लिखा है।

मंदिर दिखाई दे रहा है। जिसमे व्हाइट कलर का पेंट किया गया है। कुछ लाईने दिखाई दे रही हैं जो रेड येल्लो ग्रीन कलर की हैं।

स्माइलइ बनी हुई है बलून में और ऐ_सी लगी हुयी है यहाँ पे और स्टूल रखा हुआ है। दीवाल (दीवा में सजावट की गयी है।

रखी हुई है क्लिनिक के गेट पर व्हाइट कलर पट्टी लगी हुई है और उस पर काँच लगा हुआ है। काँच में एक रेड कलर का निशान बना हुआ है। क्लिनिक के बाहर ब्लू कलर से कुछ लिखा --